एगो आदमी बेठल वा मतम्ब ऊ ओके तारे ला बैठल हाई इ एगो भारतीय पेट्रोलियम की टेंकर है। जिसमे--

लेकिन एकर गोड़वा बहुत बड़का बा | इ अनजात से भी कैसे बड़का भी समझ में नइखे आवत |

ई एगो ग्राउंड लगाता जेमे बहुत ज्यादा मतलब घर लगाता उजर पेंट हाई मतलब ई हाई की मतलब ई मतलब लागता ऐमे लोग रेहवे ला रूम रेंट वाला--

एगो भगत सिंह के फोटो लगाता और मतलब मतलब और भी अभ्रहम लिंगदन एगो फोटो लगाता एगो पंखा भी लगाता।

और देखो टावर भी लउकत है भाई और इस इ घीचाय जोन ये है भाई रोड भी लउक रहा है और रोड के इधर फुटपाथ पर एथेइ दिख रहा है मतलब गाछ पेड़-पौधा दिख--

इ तो एगो ल लोकस एगो होटल लोकता जेमे एगो पीला कलर के आदमी बा ओकरा बाद एगो आदमी लागता उ खियावे वाला ह |

उज्जर उज्जर पैंट हाई एगो जेने से आदमी भी हई हरियर घास उस हई ।